उ पेड़ है खम्बे हैं उसके ऊपर लाइट लगी हुई है |

वैन खड़ी हुई है कारे खड़ी हैं बाइक खड़ी है।

एक खिड़की लगी हुई है इसके बाजु में चार ऐ.सी. अ लगे हुए हैं नीचे रैलिंग पे भी बोर्ड लगे हुए --

इ सफ़ेद कलर की इमारत है जो दो तरफ से बनी हुई है पहले तल के उपर बोर्ड लगा हुआ है।

चैनेल गेट लगा हुआ है जो काले कलर का है सीढ़ी बनी हुई है।

ऊपर लाइट जल रही है आसपास लोग खड़े हुए हैं एक बच्चा गोद में है।

कही-कही हरी घासे लगी हुई हैं झूले लगे हुए हैं बड़े-बड़े।

वेट लिफ्टिंग कर रहा है उसने चेन में वेट रखा हुआ है।